साइड में चम्मच दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं।

कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है।